और यहां पे डस्टबिन भी रखा हुआ है यहां पे--

प्याज भी रखे हुए हैं एक कैंटीन में यहां पे आप देख सकते हो बहोत सी बहोत सारा सामान रखा हुआ यहां पे।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

और यहां पे सी_सी_टी_वी लगी हुई है ए_सी भी लगी हुई है।

छोटी बड़ी मछलियां हैं मछलियों का रंग--

ये यहां पे एक आई लव भी लिखा हुआ है यहां पे--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

और यहां पे एक नेकलेस टंगा हुआ है और यहां पे कस्टमर बैठे हुए हैं।

मंडा लिखा हुआ है शिव लिखा हुआ है।

और यहां पे एक पेशेंट खड़ी हुई लड़की है और यह दवाइयां लैब जांच लिखा हुआ है यहां पे खून की जांच की जाती है।

ये यहां पे एल_जी की दुकान है यहां पे प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है यहां पे--

यहाँ पे ये पेड़-पेड़ है चारों तरह चारो तरफ पेड़ ही पेड़ है और बीच मे पानी की नदी है और ये पेड़ रोड से --

गमला सा बना हुआ है इसके बीच में फूल फूल लगे हुए हैं।

ये यहां पर आप देख सकते हो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है।

जयपुर ट्रैक लिखा हुआ है यहां पे--

और यहा पे बहोत सारे समान लिखा हुआ है।